इस तस्वीर में मुझे एक केबिन दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे कुछ महिलाएं दिखाई दे--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

इस तस्वीर में मुझे कुछ बस दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहां मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ केक दिखा--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

इस तस्वीर में मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।